कुछ लड़के रोड से जा रहे है।

यहाँ पे लाल रंग के फ्लॉवर है दो डब्बे है।

हम्म हम्म यहाँ एक मकान दिखाई दे रहा है--